एक पीले कलर की कैरेट रखी है आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं।

बहार एक स्टूल रखा हुआ है स्टूल पे वाटर कूलर रखा हुआ है।

दरवाज़े पर तिरंगे चिपके हुए हैं।

ये एक चित्र है ये एक स्टेडियम का चित्र है स्टेडियम का नाम बुखेश्वरी पुखनानी डोर स्टेडियम है।

चित्र एक दुकान का है दुकान आइसक्रीम की है।

यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है टेबल के पास दो चेयर रखी हुई हैं।

किनारे पे बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं।

आस पास कुछ छोटे छोटे पहाड़ बने हुए है।

ये एक स्कूल है यहाँ पर एक शटर दिखाई दे रहा है।

झूले लाल और नीले रंग के हैं पीछे एक घर भी बना हुआ है।

गुब्बारों से यहाँ पर सजावट की गई है।

एक आदमी सफेद रंग के कपड़े पहेन कर बैठा है।

उसमें सफेद रंग की लाइटें जल रही हैं।

एक दरवाज़ा जाली का दिख रहा है जो नीले रंग से पुता हुआ है हाँ पे एक एक्टिवा भी खड़ी हुई है।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

पार्क में सामने जालियाँ लगी हुई हैं जालिया सफेद रंग की पुती हुई हैं।

सामने एक डंडा दिखाई दे रहा है जो लाल रंग से पुता हुआ है।

यहां पर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं एक ऑल्टो कार भी खड़ी हुई है।

सामने की तरफ एक ग्रीन कलर की बड़ी-सी बिल्डिंग बनी हुई है।

ज़मीन पे ग्रे कलर के टाइल्स लगे हैं ।

सामने एक कंडी रखी हुई है।

पीछे ब्लू कलर की टेबल्स लगी हुई हैं।

बच्चे ब्राउन कलर का सोयटर पहना है।

यहाँ पे मज़दूर छत पे माल डाल रहे हैं।

कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं ।

नीचे बहुत सारे एप्लस दिख रहे हैं।

टीचर ने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ये एक चित्र है चित्र एल ज्वेलरी शोरूम का है।

पीछे बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है।